इस पिक्चर में कई सारे लोग दिखाई दे रहे है।

व मकान भी दिखाई दे रहे है।

स्कूटी बाहर खड़े हुए हैं।

जमीन मिट्टी की है मिट्टी पे कुछ छोटे-छोटे घास --

सड़क पे कई सारे लोग दिखाई दे रहे है।

ये शंकर तथा पार्वती जी की बेटी है।

कई लोग पेड़ के पास दिखाई दे रहे है। कुछ कुर्सियां रखी हुई है।

एक आदमी मुँह पर मास्क लगाए हुए है।

एक ट्रेक्टर दिखाई दे रहा है। ट्रेक्टर पे --

कई सारे सामान रखे हुए है।

पिक्चर मे एक मूर्ति दिखाई दे रहा है।

नाचते हुए दिखाई दे रही है। लड़की के पीछे --

लाल तथा ऑरेंज रंग की साड़ी पहने हुई है।

ज़मीन पर हरे रंग का मैट बिछा हुआ है।

हबाई जहाज दिखाई दे रहा है। वह जहाज लाल व सफ़ेद रंग का है।

वह फूल पीले रंग के पन्नी पे रखे हुए है।

घर मे कई सारे खिड़ --

कोल्ड्रिंक पानी आदि सामान दिखाई दे रहे है।

उसपर अंग्रेजी में केरेला होटल लिखा हुआ है।